बड़ा सा रोड है जिसपे एक ट्रक और एक ट्रैक्टर लाल रंग का खड़े हुए हैं।

एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ रैक के अंदर लेज कुरकुरे टंगे हुए हैं।

एक माल दिखाई दे रहा है।

जिसके अंदर बहुत सारे कपड़ों के में एक--